यह एक दुकान है यह एक कपड़े का दुकान है जो अंदर हम देख रहे हैं बहुत सारे कपड़े यहाँ पे लटके हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्टूल है यहाँ पे दुकान के बाहर एक शटर हैं।

यहाँ पे एक थेयटर दिख रहा हैं यहाँ पे थेयटर के ऊपर हमें बीच में प्रोजेक्टर दिख रहा हैं और राइट साइड में हमे यहाँ पे--

यहाँ पे एक टूशन की क्लास चल रही है यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे आ आये हुए है यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक--

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही हैं यहाँ पे बिल्डिंग का ऊपर एक शटर दिख रहा हैं जो के बंद हैं यहाँ पे शटर का कलर यहाँ पे गोल्ड कलर दिख रहा हैं यहाँ पे एक पोस्टर दिख रहा हैं की मुकाम टुटोरिअल्स दिख रहा--

यहाँ पे इस पोस्टर पे एक छोकरी खड़ी हुई हैं यहाँ पे और यहाँ पे राइट साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही हैं।

यहाँ पे हमे एक ऑटो दिख रहा हैं जो कि रेड कलर का हैं यहाँ पे नीचे एक रोड लिखा हुआ हैं जो कि एक येलो पट्टी एक दिख रही हैं रोड पे यहाँ पे राइट साइड में एक डिवाइडर दिख रहा हैं।

एक रोड दिख रहा है यहाँ पे रोड के बीच मे गाय दिख रही है यहाँ पे लेफ्ट साइड में है एक गाड़ी में एक अंकल आंटी बैठ के जाते हुए दिख रहे है यहाँ पे --